किये हुए है घर के साइड में एक शटर लगाये हुए हैं।

इसमें कुछ रखे जाते होंगे और यहाँ पे साइड में तीन--

चीयर है इस चीयर में कितने आदमी बैठते होंगे।

और इस होस्टल के बाहर ही बहुत खतरनाक रोड है |